खन्ना पेन क्लिनिक डॉक्टर संजय खन्ना एम_बी_बी_एस एम--

शहर फोर एट थ्री फाइप जीरो वन में स्थित है जिसका फ्रंट गेट आपको नजर आ रहा है।

यह एक खन्ना क्रेन सर्विस है जो की रेलवे के डिलीमेंट एक्सीडेंटस या ब्रेकडाउन हो जाते हैं।

साइ बाबा मंदिर की पिक्चर है जहां पर सिद्धि शिर्डी के साइ बाबा विराजमान हैं।

दिव्य और सुंदर प्रस्तुति है साई बाबा की।